याँ में जंगी भी को हैं। जाँ में बहुत बड़े पुजारी भी है।

एक ओरी एक ओरी साबुन-सोडा हैं।

खूब सजावट है। इ त गणेश जी की मूरत है।

आज यहाँ आ खम्भा लोहे को भी लगो है।

ईटन से चुनी हैं। तीन तस्वीरें लगीं हैं।

यहाँ मछरियाँ भी हैं। यहाँ में सब लोग मास्क भी लगाए है।